मुझे यहाँ पर एक पार्किंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है गेट के बाहर कुछ लोग खड़े है और गेट पर एक आदमी खड़ा है।

पार्किंग में कुछ गाड़िया खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ जिम दिखाई दे रहा है। यहां पर कुछ चीजें हैं कुछ चीजें पीले और कुछ चीजें काले रंग की हैं।

नीचे वाला फर्श लकड़ी की डिजाइन का है और कुछ जगह पर ब्लैक कलर की मैट बिछी है।

मुझे यहां पर एक जिम दिखाई दे रहा है जिम बहुत ही छोटा है जिम में बहुत कम मशीने--।

मुझे यहां पर एक लाल रंग का गेट दिखाई दे रहा है। गेट के पीछे मंदिर भी है गेट के सामने एक साईकल खड़ी है गेट के साइड में एक दीवार है।

मुझे यहाँ पर कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे है पहाड़ पर बहुत सारी घास फुश पेड़ पौधे लगे हुए है और नीचे बहुत सारी प्लेस भी है प्लान में भी--

गाड़ी के सामने एक जी कार भी जा रही है और उसके साइड में एक रिक्शा भी खड़ा हुआ है।